एक जिम दिखाई दे रही है एक आदमी मिरर में अपना तस्वीर खींच रहा है और दो लोग खड़े हुए है फिटनेस बोर्ड --

यहाँ पे बहुत सरे गर्ल्स खड़े है।